और एक जन नावं रखी है उसमें वो रहता है ऑरेंज कलर का वो दिख रहा मुझे।

जेंट्स एंड लेडीज एंड बच्चे --

एक बांस दिखाई दे रहा है।

और क्रिकेट टीम दिख रही है।